ये तस्वीर एक बस के अंदर की है जिसकी सिटां बहोत नीट एंड क्लिन हैं।

इसके काफी छोटे छोटे पत्थर और बड़े पत्थर बिखरे हुए दूर दूर काफी ऊची--

और कुछ लड़के अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं पीछे काफी लोग पत्थरों पे बैठे हैं।

पड़े हुए हैं और उसके ऊपर एक मकान बना हुआ हैं जो अच्छे से पेंट किया गया हैं।

ये तस्वीर एक स्कूल की अह ग्राउंड की है जहां--

बेड के ऊपर काफी नए और सुंदर लेमिनेशन की गद्दे रखे गए हैं उसकी टॉप भी बहुत क्रीम कलर की है।

ये तस्वीर एक अकेडमी की है इ स्पीक इस स्पोकन इंग्लिश कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ--

ये तस्वीर एक मेट्रो के टायर्स की दुकान है जिसमें काफी टायर पड़े हुए हैं।

कुछ टायर एक स्टेंड बनाया हुआ ऊपर टायरो की दो लाईन बनी हुई हैं अलग अलग डिजाइन साइज और शेप की हैं।

ग्लूकोज की बोतल भी है आगे बचाने के लिए फायर जंतर भी है।

एक पैलेस का सीन है जगह विच मतलब उन्होंने स्टाल्स वगेरह लगाये हुए है यहां अलग अलग टाइप के--